उसमें हल्के हल्के मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

इस में पुराने पुराने तरह के डिज़ाइन है और इसके ऊपर एक लाइट भी रखी हुई है।

उसने अपने गले में एक पन्ना या गमछा रखा है।

यह फोटो किसी समुद्र के तट का नजर आ रहा है।

और एक बोट में बहुत सारी औरतें और आदमी बैठे हुए हैं।

और भीत पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

और कुछ लड़के गोलधारा बनाकर बैठे हुए हैं।

रंग बिरंगे फूल भी हैं और इसमें बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

इस फोटो में कुछ लड़के हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं।

जंगला भी है और जंगले के ऊपर पर्दे भी टंगे हुए हैं।

जिसमें कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

इनमें से एक ट्रैक्टर बिल्कुल टूटा हुआ है जिसके दोनों पहिए टूटे हुए हैं।

इस पर तीन दिए भी धरे हुए--

पीछे अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है।

इस फोटो में कुछ कुर्सियां लिख रही हैं।

इसमें एक पंखा भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक कैंची दिखाई दे रही है।

और एक वाइट रंग का बोर्ड भी दिख रहा है।

बेचों पर बैग भी धरे हुए हैं।

एक साइड मोटरसाइकिल का हैंडल भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक जूता भी दिख रहा है।

जिसमें पुराने तरह के डिजाइन हैं।

इस इमेज में प्लास्टिक के बहुत सारे बसन रखे हुए हैं।

एक मोटरसाइकिल पर हेलमेट टंगा हुआ है।

और उसके पीछे एक औरत भी बैठी हुई है।

कुछ ईंटों की बनी हुई इमारत सी दिखाई भी दे रही है जिस पर पीला व लाल रंग किया हुआ है।

इस फोटो में कुछ आदमियां कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

इसमें कुछ लोहे की कुर्सियां हैं और कुछ लकड़ी की कुर्सियां हैं।

कुछ शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं।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

ग्राउंड के बीच में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के चारों ओर हरे रंग की ग्रिल भी लगी हुई है।

ग्राउंड में कुछ घास भी खड़ी हुई है।

यह फोटो किसी कॉलेज के बाहर का नजर आ रहा है।

कुछ पुतले खड़े हुए हैं जिनकी नाड़--

यह फोटो किसी सब्जी की दुकान का लग रहा है।

जिसमे गज्जर रखी हुई है गोभ्भी रखी हुई है लहसन रखा हुआ है आलू रखे हुए हैं और एक टोकरी में कुछ अरमूद रखे हुए हैं।

इसमें एक स्टील की बाल्टी भी रखी हुई है।

इस इमेज में दो कार खड़ी हुई हैं जिनके ऊपर उनका कवर ढका हुआ है।

यह एक प्रैक्टिकल बायोलॉजी लैब लग रही है।

यह फोटो किसी हेलमेट की शॉप का लग रहा है।

इस साइड में एक नीले रंग की अलमारी भी खड़ी हुई है।

यह फोटो किसी पब्लिक प्लेस की लग रही है।